और ये घर पूरा टीना से बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इसका अंदर में बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

और बहुत सारा पेर भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक घर का अंदर दिखाई दे रहा है।

सामने में बहुत सारा पेड़ भी नजर आ रहा है।

और बहुत सारा पर्दा दिखाई दे रहा है।

और टीन का अंदर में एक टेबल और तीन औ चेयर दिखाई दे रहा है।

जिसके अंदर में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

बहुत सारा लाइट्स भी जलते हुए दिखाई दे रहा है।

और अगर आगे मे एक चक्का का गाड़ी भी दिखाई दे रहा--

दो ठो लड़का भी नजर आ रहा है।